एक लाइट बड़ी सेी लगी हुई। एक ट्रक खड़ी है। दो आदमी बोरियों में सामान लादकर ले जा रहे हैं।

आकाश दिखाई दे रहा है झाड़ दिखाई दे रहा है नीचे घास है और ये शाम का सीनेरी है देखने में अच्छा लग रहा है।

दिखाई दे रहा है इसकी जमीन ग्रे कलर की सफ़ेद दीवाल है सामने कोई खिड़की है जिससे उजाला आ रहा है अंदर और एक छोटा कुर्सी है उसमे कुछ सामान रखा है।

जैसे कि हम कह सकते हैं कोई कार का शो बड़ा सा शोरूम है। शोरूम के सामने बड़ी सी कार रखी है। कार ग्रे कलर की है।

जैसे कि हम कह सकते हैं ये बनारसी चाट या को कोई चाट जैसा दिखाई दे रहा है। ये सफेद कलर की कटोरी है।